यह तस्वीर एक स्टोर की दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग के सामने से बिजली की तार खींची गई है।

मिट्टी की मेढ़ी बनी हुई है और उसमें घास लगा हुआ है।

भुट्टे के ऊपर ब्राउन ब्राउन बाल लगे हुए हैं।

ट्रेन के पीछे बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं।

रोड के किनारे ब्लू कलर की बाउंड्री की हुई है।

येलो स्वेटर में एक लड़का खड़ा है।

आपस में दो लड़कियां बातें कर रही हैं।

लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं।

ओपन जिम बनाया गया है।

ब्लैक कलर की टी शर्ट और रेड कलर की लहंगा पहनी हुई--

एक व्यक्ति रेड कलर की चेयर पे बैठे हुए हैं।

व्हाइट कलर से बाउंड्री की पुताई की गई है।

यह तस्वीर किसी शादी समारोह की है।

ये तस्वीर एक बुक स्टोर की है।

पीछे बच्चों के स्टडी से रिलेटेड कुछ सामान टांगे गए हैं।

पीछे वॉल में स्क्रीन लगाया गया है वीडियो गेम का।

सामने के पिलर को ब्लू पीला ऑरेंज कलर से कलर किया गया है।

यह एक ढाबा है शेर ए पंजाब यहां पे बाहर कुछ स्टाफ पेपर पढ़ रहे है और बैठे हुए है।

एक छोटा सा लड़का बाइक के पीछे के पार्ट्स को वाश कर रहा है।

सामने बहुत सारी बाइक को पार्क किया गया है।

ये तस्वीर एक पिज़्ज़ा हट की है।

ऊपर की ओर एम_सी डोनाल्ड का टैग लगा हुआ--

ये तस्वीर एक कार वोश की है।

गिरते हुए पानी का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

पीछे स्टाफ के हाथों में ड्रायर है और चेहरे पे मास्क लगे हुए हैं।

ये किसी बंगले की तस्वीर है।

खाली जमीन पर हरे घास उगे दिख रहे हैं।

यह तस्वीर किसी स्कूल का नजर आ रहा है।

ब्लू कलर की बोट लगी हुई है।

का नाम प्रवीन साड़ी सेंटर है।

सामने शीशे के गेट लगे हुए दिखाई दे रही हैं एवं गेट के पास एक पंख लगा हुआ है।

यह तस्वीर किसी ऑफिस की है।

पीली कलर की साड़ी पहनी हुई एक औरत मछली ले रही है।